मुझे इस फोटो में बहोत सारे फुग्गे दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी कारें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे बेलून दिखाई दे रहे हैं। मुझे--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

मुझे इस फोटो में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे फर्श दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में चट्टान दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग दिखाई--

मुझे इस फोटो में सड़क दिखाई दे रही है।

बोहोत बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में सड़क दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुर्सियाँ दिखाई दे रही है। मुझे इस --